एक व्यक्ति उन्हें ऊपर बैठा योगा सीखा सीखा रहा है और जेंट्स और लेडीज सभी बैठे अपने हाथों को स्ट्रेच करके योगा कर रहे हैं।

यह एक शादी सामरोह का स्टेज दिखाई दे रहा है।

स्टेज के नीचे कुछ लाइट्स लगाई गई हैं।

पानी के फुहारे निकल रहे हैं स्टेज के ऊपर कुछ लोग खड़े हुए हैं और कुर्सी वगैरा रखी गई है बहोत प्यारी सजावट--

यह एक बड़ी सी मंदिर दिखाई दे रही है जिसमें कुछ लोग पूजा करने जा रहे--

है इसमें एक औरत है जो येलो कलर की साड़ी में पूजा करने जा रही है।

पीछे एक यीशु मिसू का बड़ा सा स्टेचू बना दिखाई दे रहा है।

टेबल के ऊपर कुछ सीड्स ई स्पून एंड ग्लास रखे हुए--

वलूंस व्हाइट एंड रेड से डेकोरेस डेकोरेट किए गए हैं।

रेस्टोरेंट के बाहर की विंडो ओपन है एंड विंडोस कांच--

अंदर बहुत सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें अ कपड़ों को फोल्ड करके रेडीमेंट कपड़ों को रखा गया है।

कॉलेज की गेट के बाहर बाइक खड़ी हुई है।

जिसमें एक व्यक्ति बाहर सफाई करता हुआ झाड़ू लगा रहा है।

दोनों उस नदी में खड़े स्नान के प्रति इंतजार कर रहे हैं।

इस इमेज में एक ए_टी_एम की दुकान दिखाई दे रही है जिस पे दो तीन लोग बाहर बाइक पे खड़े हुए हैं ए_टी_एम का दरवाजा--

बंद है ऊपर दुकान के एक ए_टी_एम की बड़ी सी पोस्टर लगी हुई है।

दिवालो के ऊपर कुछ तस्वीरें टंगी हुई हैं।

पंखे हैं और लाइट्स जल रही हैं।

यह एक शादी समारोह का मंच दिखाई दे रहा है।

मंच के नीचे एक टेबल रखी हुई है बहुत फूलों से सजावट की गई है।

और बहोत सारी फूले इसमें लगाई गई है।

यह एक घर के भाति दिखाई दे रहा है।

और खिड़कियां खुली हुई हैं।

इस इमेज में एक लड़की दिखाई दे रही है।

और ऊ पर ऑडिशन को बैठने के लिए ऊपर छत--

जो कि दोनों बच्चे पियानो बजा रहे हैं एक बच्चे ने व्हाइट कलर की टी शर्ट और दूसरे ने रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।

इस इमेज में पलाथिन में रखे हुए कुछ झींगा दिखाई दे रहे हैं।

है जिसमे पत्थर पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने पैंट शर्ट एंड जैकेट डाली हुई है उस--

इसमें अंदर खाने पीने की चाट पकौड़ी समोसे सामान रखे हुए हैं।

इसमें एक दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जिसमें एक रेड कलर की गाड़ी की डिग्गी को ओपेन किया गया--